नीचे के फर्श का कलर लकड़ी का है जोकि भूरे और काले रंग का दिखाई पड़ रहा है।

आगे की ओर एक झाड़ू रखा हुआ है।

बाहर नीचे उतरने के लिए सीढ़ी बनाई हुई हैं।

एक फोन पे का स्कैनर दिखाइए पड़ रहा है।

सामने मे एक पोस्टर लगाया हुआ जोकि पीले रंग का दिखाई पड़ रहा--

उसका दोनों दरवाजा खुला हुआ है।

इस दृश्य में एक बस दिखाई पड़ रहा जो कि लाल ग्रे कलर का दिखाई पड़ रहा है।

दृश्य में घर दिखाई पड़ रहा है जो की भूरे रंग का है।

और वह एक बाइक पर बैठा हुआ है।

नीचे सूखे हुए घास भी दिखाई पड़ रहे हैं।

साइड का कव कबड ग्रे रंग का दिखाई पड़ रहा है।

यह दृश्य एक दुकान का है।

इधर का कलर ब्लू दिखाई पड़ रहा है उसके बगल में दो तीन डब्बे रखे हुए हैं जो कि सफेद हैं।

यह दृश्य हॉस्पिटल का है।

जो की क्रीम कलर का है सारे चेयर पर बैठे हुए हैं।

बहुत सारे चेयर भी लगाए हुए हैं चेयर कुछ चेयर काले और लाल रंग के और कुछ लाल रंग के दिखाई पड़ रहे है।

यह दृश्य पहाड़ का है।

दृश्य में बहोत सारे टायर दिखाई पड़ रहे हैं सारे टायर अलग अलग स्टैंड पर रखे हुए हैं।

इस दृश्य में बहुत सारे लोग हैं।

और नीचे का फर्श सफेद रंग का दिखाई पड़ रहा--

फूल का रंग नीला पीला लाल दिखाई पड़ रहा है और--

इस दृश्य में एक बहुत बड़ा घर दिखाई पड़ रहा है।

कुछ पेंस भी नजर आ रहे हैं।

यहां पे एक सैंटा है जो की लाल रंग का कोट पहना हुआ है।

जो की भूरे रंग का दिखाई पड़ रहा है।

राइडर के सीढ़ी के पास दो जूते भी रखे हुए हैं।

यह दृश्य सब्जी दुकान का है यहां पे प्लास्टिक में भर के नींबू रखा हुआ है।

साइड में धनिया रखा हुआ जो की हरे रंग का दिखाई पड़ रहा है।

बाहर की ओर दो ड्रम रखे हुए जो की ब्लू रंग के हैं।

इसका स्क्रीन ऑन है।

जो कि काले रंग का है।

इस दृश्य में गौतम बुद्ध जी का मूर्ति दिखाई पड़ रहा है और बगल में दो झंडे भी लगाए हुए हैं।

दो फूलदान भी दिखाई पड़ रहे हैं फुलदान में फूल रंग बिरंगे दिखाई पड़ रहे है।

आगे की ओर तीन बहुत सारे चेयर लगाए हुए हैं।

पेंट के डब्बे का कलर पीला उजाला लाल उजाला ऑरेंज उजाला दिखाई पड़ रहा है।

यहां साइड में कुछ पेन भी लटकाए हुए हैं।

यह दृश्य श्रृंगार स्टोर का है।